मस्जिद बड़ी नजर आ रही है व्हाइट कलर की है।

एक ऑटो आता हुआ दिख रहा है।

बड़ी बड़ी घासे भीं दिख रहीं हैं।

इसकी दीवारें सफेद कलर की हैं।

ये एक ठेला दिख रहा है।

काले कलर की मूर्ति बनी हुई है।

और उसको गोल्डन कलर के पोशाक पहना ये हुए हैं।

क्रिसमस का फंक्शन चल रहा है।

मस्जिद के सामने एक बड़ा सा गार्डन भी है जो कि गंदा हो रहा है।

इधर कुछ लोग दिख रहे हैं।

ऊपर ऐ_सी भी लगी हुई है।

यह बहुत बड़ी शॉप दिखाई दे रही है।

बाहर गमले भी नजर आ रहे हैं।

के कपड़े पहने हुए एक डमी खड़ी हुई है।

जो कि पीले कलर की फ्रॉक पहनी हुई है।

जिस जो रेड कलर की है।

ब्राउन कलर के टेबल पे काले कलर की ट्रे में--

जो कि ब्लू टी_शर्ट पहने हुए हैं।

इससे पता चलता है कि यह एक गर्ल्स हॉस्टल है।

ऐसा लगता है यह शाम का सीन है और कहीं ऊंची जगह से इसकी फोटोग्राफी की गई हो।

यहां पर बहुत तरह के टैडी बेयर्स रखे हुए हैं और सॉफ्ट टॉयज रखे हुए हैं।

दीवारें ग्रे कलर से पुती हुई हैं।

ये एक दुकान के बाहर का सीन दिख रहा है।

जो कि जैकेट पहने हुए हैं और पैंट पहने हुए हैं।